यहां पर एक रेलगाड़ी मालगाड़ी खड़ी हुई है।

इसके पीछे एक ऐ_सी लगी हुई है इसके नीचे हरे रंग की मैटी बिछी हुई है।

शादी की स्टेज पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर एक नीले रंग का बोर्ड लगा है।